यहां चार रैक हैं चारों में अलग अलग तरीके की दवाई रखी है।

यहां बहोत सारी कलरफुल अलमीरा नजर आ रही है।

और सब ने सफेद कलर का यूनिफार्म पहन रखा है।

ये किसी मंदिर के अंदर का एरिया नज़र आ रहा है।

यह एक पेट्रोल पंप है जहां पेट्रोल की मशीन लगी हुई है।

यहां एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पी_बी इंडिया निधि लिमिटेड --